जिसमें डिब्बा में कुछ कपड़े वगैरा रखे गए हैं।

यहाँ एक बड़ा सुलभ शौचालय है।

ऊंचाइयों में फवहारा जैसे छोड़ रहै है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

अच्छे ढंग से बैठे हुए--

यहाँ प्राथना करने के लिए आए होंगे मस्जिद में।

यहाँ एक बड़ा कोई होटल है जहाँ बहुत सारे लोग आये हुए है।

आप होटल का नजारा देखने आये होंगे पूरे अपने - अपने काम से यहाँ पे लोग आये है तो कुछ रेस्टोरेन्ट होगा उसको --

इस मंदिर के लोग अपने परिवार के सुख शांति अपने बच्चों के उज्वल भविष्य के कामना के लिए--

और पुरे लाइट से मंदिर को बढ़िया सूंदर बनाया गया है।